जैसे की मै देख रही हूँ यहाँ पे एक इमेज दिखाई दे रही है जो की किसी म्यूजियम इमेज लग रही है। यहाँ पर कांच का एक बहोत बड़ा फ्रेम बना हुआ है।

जैसे कि मैं यहां पे देख रही हुँ यहाँ पे एक इमेज दिखाई दे रहा है जो कि किसी मयूजियम का इमेज लग रहा है यहाँ पे एक कांच का केेबिन बना हुआ है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें रखी हुई है ये चीजें मूर्तियाँ हैं।

जैसा की मैं देख रही हुँ यहाँ पर एक इमेज दिखाई दे रही है जिसके अंदर बहुत सारी छोटी -छोटी मूर्तियाँ रखी हुई है जो की अलग-अलग चीज की मूर्तियाँ हैं।

जैसे की मै देख रही हूँ। यहाँ पे एक इमेज दिखाई दे रही है। जिसमे एक म्यूजियम की इमेज लग रही है। यहाँ पे सामने कांच लगा हुआ है।

और बीच मे कुछ लोग दिखाई दे रहे है जो की बालकनी मे खड़े हुए हैं। नीचे टाइल्स लगी हुई हैं। यहाँ पर बोहोत सारे गेट लगे दिखाई दे रहे हैं और खिड़कियां भी दिखाई दे रही हैं।